दीवार में स्वीच बॉक्स भी लगा के रखा है।

रोड साइड में दो बाइक भी पार्क करके रखा है।

बहुत वायर पोस्ट भी दिखाई दे रहा है।

सामने तीन मनुष्य भी दिखाई दे रहा है।

और एक टोपी भी दिखाई दे रहा है।

के अंदर बहुत सारा मनुष्य भी बैठा हुआ है।

सामने छोटा सा घर भी दिख रहा है।

बहोत सारा कम्प्यूटर भी रखा हुआ है।

लाइट भी लगा के रखा है ऊपर में फैन भी तंगा के रखा है।

मुझे इस तस्वीर में एक मनुष्य दिखाई दे रहा है।

दुकान के बाहर में बहोत सारा टायर भी रखा हुआ है।

दीवार में फैन भी लटका के रखा है।

साइड में बड़ा बड़ा पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

रोड साइड में बहुत सारा गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

घर के बाहर में सफेद रंग का गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में पक्का से बना हुआ घर दिखाई दे रहा है।

सामने वायर पोल्स भी लगा के रखा है।

घर के बाहर में ब्लैक कलर का गाड़ी भी पार्क करके रखा है।

मुझे इस तस्वीर में वॉल में बनाया हुआ पेंटिंग दिखाई दे रहा है।

दृश्य में घोरा भी दिखाई दे रहा है।

घर में बहोत सारा खिड़कियां भी लगा हुआ है।

ऊपर में बहुत सारा लाइट भी लगा के रखा है।

साइड में बहुत सारा फुल पोट भी रखा हुआ है।

सामने बरा सा बोर्ड भी लगा के रखा है।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

मुझे इस तस्वीर में टीना का घर दिख रहा है।

टीना का बनाया हुआ गेट भी लगा के रखा है।

बगल में बहुत सारा खिड़कियाँ भी दिखाई दे रहा है।